पोल खड़ा है और इसके पीछे में--

इसमें तीन चार खिड़की और एक दरवाजा है।

एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस--

और ये खाली पड़ा हुआ है।

यह दुर्गा पूजा का डिजाइन बना हुआ है इसमें लाइट चक्ल रहा है और एक अथी भी है।

और उसके सामने एक पंजाबी पहने एक लड़का खरा है।

यह चारों तरफ से घेरा हुआ है।